और जोकि ईटों की सड़क है और यहाँ पर एक घर बना हुआ है और सामने एक एकडेमिक है। एकडेमिक सेक्शन है। ये शायद ये एक कॉलेज है।

यह एक एमएमसी एंड एचसी मेडिकल स्टोर है। यहाँ पर सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। यह पर यूनानी और --

हरी हरी झाडिय भी है और सामने बहुत सारी मटी है जो मटी खदरी पड़ी है।

यहाँ पर बुके रखी हैं जो बोहोत सारी बुके हैं।

आदमी बैठे हैं और कुछ बच्चे बैठे हैं और यहाँ पर कुछ पेड़ लग रहे हैं। वो जो बहोत ऊंचे-ऊंचे पड़ पेड़ है। इसका पता नहीं काए का पेड़ --

यहाँ पर एक बैंक है।

इसमें पहाड़ो में जो झरना तैर रहा है जो नदी में जा रहा है जिसका पानी और यहाँ पर बोहोत ही घना जंगल है। यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है।